यहां एक फुटबॉल खेल हो रहा है और बहुत ही आदमी है पूरा भीड़ लगा हुआ है एक झंडा गड़ा हुआ है।

यह एक समुंद्र है कुछ आदमी वहा है और गांच --

यहां यहां पर एक ठो रूम है और उस रूम में लाइट भी लगा हुआ है।

बहुत बड़ा ही बिल्डिंग है।